व्हाइट कलर का घर समने में नजर आ रहा है। रात का फ रात फोटो ली गई है| इसमें ब्लैक कलर का दरवाजा सामने में बड़ा सा ग्रिल दिख रहा है।

दूर से इसकी फोटो ली गई है।

एक चर्च का दृश्य सामने में नजर आ रहा है। दूर से इसकी फ़ोटो ली गयी है। चर्च बोहोत पुराना नजर आ रहा है।

फूलों की दुकान का दृश्य सामने में फूलों की माला लगी हुई है। उजला कलर की उजले कलर की फूल --

स्नैक्स कोल्डृिंक्स की लगा हुआ है सामने में| उसके आगे में अग्रवाल एंटरप्राईजेज़ का एक अ बैनर लगा हुआ है।

कुर्सियां लगी हुई हैं सफ़ेद कलर की उसको कुर्सियों को सजाया गया है पीले कलर के रीबन और सफ़ेद कपड़े के साथ।

और उसके सामने बोर्ड भी लगाई हुई नजर आ रही है।

को दाढ़ी बनाते हुए नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है।

दो तीन वाहन लगे हुए हैं सामने में। इसकी फोटो ली गई है। इसके अ मे वेस्टेड का एक --